इस फोटो के अंदर हमें एक फुटबॉल टीम खेलती हुई नजर आ रही है।

व ईश मूर्ति के पास बहुत सारे लड़के दो कतारों में खड़े हैं।